इसमें दो आदमी बैठे हुए हैं और एक खड़ा हुआ है।

इसके पीछे एक झोपड़ी टाइप में कुछ बना हुआ है।

इसके पीछे एक टंकी भी खड़ी हुई है।

यह एक बहुत ही बड़ी दुकान है इस दुकान के अंदर कुछ ट्यूबलाइट लगी हुई है।

टैर के पास में एक बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

इसके सामने बोहोत सारी मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है।

और इनके पास में दो कार भी खड़ी हुई है एक वाइट कलर एक ब्लैक कलर की।